यह एक मेराव रेस्टोरेंट एंड बैंक्विट नामक दुकान है दुकान के नीचे की तरफ एक्सिस बैंक का ए_टी_एम बैंक ऑफ़ इंडिया और बैंक ऑफ़ इंडिया ए_टी_एम है।

दुकान के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है जिस पर मिलाप शूज कंपनी लिखा हुआ है।

वहीं पर ग्रीन कलर का ट्रैक सूट पहने हुए आदमी किसी की तस्वीर ले रहा है।

यह अंबेडकर पार्क का दृश्य है।

साथी में एक आदमी कुर्सी पर टेक लगाए बैठा हुआ--

दुकान है आइडिया की जो कि बाहर की तरफ बोर्ड पर लिखा --